जहाँ पर कई सारे व्यक्ति--

और कुछ लोग बाहर की तरफ--

बड़े-बड़े लकड़ी के कबर्ड्स --

पार्क में छोटे-छोटे पौधे लगे हैं।

और कुछ लोग पार्क मे बैठे हुए हैं।